समय रात का है और चेयर के आगे एक सिल्वर रंग का पतीला रखा हुआ है।

फोटो में किसी चीज का सेलिब्रेशन का फोटो दिखाया हुआ है ये चर्च के व्यू का है।

सामने के साइड एक पिंक कलर का टी शर्ट पहन के पर्सन खड़ा है उसका चेहरा ब्लर है।

ये फोटो एक शॉप की है शॉप में बहुत सारा सामान दिखाया गया है।

राइट साइड ब बहोत से पेंस रखा है।

राइट साइड सफेद कलर के शेल्व्स जिसमें भी कई प्रकार के किताबें रखे हुए हैं।

यह फोटो में दो लोग कैमरे पकड़े हुए दिखाएं जा रहे है इन दो लोगों का चेहरा ब्लर है और इन्होंने हरा जैकेट पहना हुआ है।

रोड में एक लाल रंग का रिक्शा या ऑटो जा रहा है।

फोटो के लेफ्ट साइड में बहुत प्रकार के भी रखे हुए हैं।

लेफ्ट साइड मैं एंट्रेंस है जो लोहे से बना हुआ है।

फोटो में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई हैं।

फोटो में एक बिल्डिंग का व्यू दिखाया गया है।

बिल्डिंग के आगे बहुत से बैनर्स लगे हुए हैं सबसे ऊपर बैंक ऑफ़ इंडिया का बैनर है और उसके नीचे ओप्पो का बैनर है।

यह फोटो में एक व्यक्ति का हाथ किसी फ्रूट को थामे दिखाया गया है।

नीचे में पौधे किसी काले बैग के अंदर रखे हुए हैं।

ऊपर में कई येलो प रंग के पर्दे भी रखे हुए हैं।

पार्ट के लेफ्ट और राइट साइड छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं और बड़े बड़े पेड़ भी लगाए हुए हैं।